इस नदी में एक नाव भी दिखाई दे रहा है जिस के ऊपर दो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है ।

और बोहत टमाटर पक चूका है।

इस शोरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है ।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेटर बॉक्स दिखाई दे रहा है जो की --

एल.सी.डी. और एल.इ.डी. टी.वी. बिक्री होता है ।

ओपन जिम और यहाँ पे कुछ बच्चे झूला में झूला झूल रहे हैं।

लगता है की दीपवाली का समय है सभी लोग नए-नए --

और ये जो सड़क है बहुत ही भीड़-भाड़ वाली सड़क है ।

इस मस्जिद में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है ।

इनमे से केवल एक महिला सफ़ेद साड़ी पहनी है ।

और दोनों ही बतख बड़े-बड़े साइज के हैं और यह जल में खेल रहे हैं।

और आस-पास में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है ।

और एक लड़का यहाँ पर खड़ा हो कर के तस्वीर खिचवा रहा है।